एंट्री बिना अ परमिशन के नहीं जा सकते है ये शायद एग्जामिनेशन के लिए सिस्टम है।

यहाँ एक बोट है जिसमे तिन लोग बैठे है और तिन लोग अपने--

अ यह आप देख सकते है हरे-हरे पेड़ पोधे दिख रहे है यहा पे बड़े-बड़े से और एक ग्राउन्ड है जहा पर बाइ खड़ी है एक इंसान अपनी गाड़ी को ले करके जा रहा है और ड्रम रखी--

शूज है और इसमे वैक मशीन भी हैशायद और इसमे काफी सारे कबर्ड से छोटे-छोटे प्यारे प्यारे से बॉल्स --

ये एक बैंक हैएक बैंक मे से एक-क जेंट्स है वो पैसे निकाल रहे है।

ये एक गार्डन है और ये नाइट व्यू है यहा पे बहुत सारे चेयर्स है और --

यह एक पूजा का स्थल है शायद यहां पर काफी सारे सीढ़ियां बनी है नीचे छोटे--

यहाँ एक नेचर है जहा पे पहाड़ बने हुए है।

खंबे है ओर यहां पे पत्थर भी है और यहां पर कपड़े धोने--

यह एक चर्च है चर्च में-ए प्लस प्लस का निशान बना हुआ है और बहुत सारी आंटिया बैठी हुई हैं जिनके सिर के वहा पे गजरा लगा हुआ है और एक आदमी खड़े होके उन्हे समझा रहा है।

एक ब्लू कलर का एक पन्नी से बांदा हुआ हे ऊपर तंबू लगा हुआ है एक आदमी बैठा हुआ है जो की सब्जी तोल रहा है ।